में मेहमूद टेलर्स का बैनर लगा हुआ है और कुछ लेडीजों के कपड़े टंगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

दुकान में एक मिस्त्री बैठा हुआ बाइक को बना रहा है।

जेंट्स के पीछे एक मूर्ति भी है और यहां पे कुछ लाइटें भी लगी हुई है।

जेनस चेयर पे बैठा हुआ दिखायी पड़ रहा है।

रोड के किनारे खंबा खंबा ऐसा लगा हुआ है पीछे ट्रक ट्रक जैसे कुछ आ रही है।

एक बच्चे ने ऊपर बैठे हुए कुछ काम कर रहा है।

और मकान के आगे पेड़ भी लगे हुए है।